और सब जूता और चप्पल कांच का अंदर में है।

वहां में पूरा रि रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है जितना भी समान है वहां में।

स्विच दिखाई देने को मिल रहा है ए_सी दिखाई देने की मिल रहा है।

एक ड्रॉवर दिखाई दे रहा है।

ये पूरा वॉल व्हाइट कलर का पेंट करके है फिर सी_सी कैमरा --

ये एक बहोत बड़ा शॉप है जहां हमे बहोत सारे चीज दिखाई देने मिल रहे है।

पहले तो आगे में ही हमें एक वातर बोतल दिखाई देने मिल रहे हैं।

ये एक ताइक्वांडो और कराटे का जगह है जहां सभी बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे हैं मास्टर भी है।

फिर ये ग्रेस ग्रे फिश जो खाने में बहुत लजीज है।

व्हाइट कलर के हैं येलो कलर के भी हैं।

जहां बहुत सारी मिस्त्री है आगे में मिस्त्री है जो चैनल बैठा हुआ है।

ये एक साइड से खींचा हुआ एक बहोत बड़ा बिल्डिंग का फोटो है जहां हमें बहुत सारी खिड़कियां दिखाई देने मिल रहा है।

ये एक शॉप है जहां हमें हिल दिखाई देने को मिल रहा है जूता दिखाई देने को मिल रहा है।

डोर का वहां में कम टू वेयर ओपन लिखे मिल रहा है।

दिखाई देने मिल रहे हैं।

बेड्स दिखाई देने मिल रहे है पिलो दिखाई देने मिल रहे है।

और इस घर को आधा वॉल और आधा बंबू से बनाया हुआ है।

बहुत सारे गाड़िया दिखाई दे रहे है लोग आदमी लोग बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

एक बरा सा फंक्शन में ऊपर में रॉयल पैलेस लिख के है।